जो की हमें पब्लिक को प्रोवाइड करनी चाहिए तो सरकार ने यहाँ पे सारी चीज की फैसिलिटी दे रखी है पब्लिक को।

खेत का है जो की हमारे उत्तराखंड में स्थित है।

हेलो दोस्तों जैसे की आप देख सकते हैं यह बहौत ही खूबसूरत चित्र है जिसमे आपको रंग-बेरंगी नावें दर्शाई जा रही हैं।

बिच में टमाटर दो सौ बीस रुपये किलो थे।

जो की किसी महापुरुष का हुआ करता था।

यहाँ पे यह नहर बेहेती है सो मैं चाहूंगा कभी आप आए तो यहाँ पे जरूर विजिट करे।

हेलो दोस्तों जैसे की आप ये चित्र को देखके समाज सकते हैं --

हेलो दोस्तों जैसे की आप देख सकते हैं यह चित्र हमे फूल की दुकान का नजर है।